इस पिक्चर में तीन बसन दिखाई दे रहे हैं तीन बसों के कलर है। एक बस का कलर ]> ग्रीन है |

इस पिक्चर मे एक ग्रोंड दिखाई दे रहा है |

माता को अच्छे से सजाया गया है और दरवाजे का रंग लाल है।

इस तस्वीर मे एक कमरे मे सफ़ेद रंग किया गया है और ऊपर दो पंखे लगाये गएँ हैं | यहाँ पर अ लाल रंग के दरवाजे और खिड़की हैं और यहाँ पर काले रंग की कुर्सियाँ भी रखीं गयीं हैं।